और मास्क भी लगा लगा रखा है।

जिसमें शाम बहुत सुंदर सुंदर कपड़े लटके हुए हैं।

और पंखे की लटके हुए हैं और लाइट भी लग रही है।

उसपे एक बहुत अच्छा चित्र भी उतरा हुआ है।

और दुकान के अंदर बैनर भी लगा हुआ है।

और छत में फैन भी लटके हुए हैं एक साइड में बाल्टी भी रखी हुई है।

और कुर्सियां भी रखी हुई है और चटाई भी बिछा रखी है।

इनपे लिखा हुआ है और दो गमले भी रखे हुए हैं।

यह एक हॉस्टल रूम है जिसमें दो बेड पड़े हुए हैं।

यह एक बहुत अच्छी दुकान है।

अऊर एक मिस्त्री वाइवेटर लिए भी खड़ा हुआ है।

जिसमें हरे कलर की शर्ट पहन रखी हुई है।

यह एक क्रिकेट ग्राउंड है जिसमें बच्चे खेल रहे हैं।

और एक इसमें रोलर भी रखा हुआ है।

और दुकान पे हरे रंग का पेंट भी हो रखा है।

इसके बाहर एक लेडी एक पर्स लिए खड़ी ही है।

सब्जी वालों की कई दुकान है।

कई सारे लोग भी सब्जी खरीदने के लिए आए हुए हैं।

यह एक मंडा का ढाबा का पोस्टर लगा हुआ है।

इसके पास बहोत अच्छे पेड़ खड़े हुए हैं।

और जो नदी का किनारा है वो भूरे रंग का है।

बहुत सारे कुर्सी पर बैठकर देख रहे हैं।

और तराजू भी रखी हुई है।

यह एक हॉस्पिटल है जिसका नाम तारावती हॉस्पिटल है।